और बगल में उसने सफ़ेद रंग का रुमाल रखा हुआ है अच्छी बात है।

ये किसी ओगेजन का हैं यहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रखा है।